ये एक पेड़ है जिसका रंग हरे रंग का है।

सामने एक दीवाल है जिसमें बहोत सारी पोस्टर लगाए गए हैं और नीचे टाइल्स का रंग--

रखे गयें है जो की काले रंग के हैं।

जो की नीले रंग के कपड़े पहेने हुआ है।

लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सामने एक ग्राउंड है जिसका रंग रंग--

बिल्डिंग है। जिसका रंग पीले रंग का है।